एक किताब की दुकान दिख रही है जिसमे बहुत सारे किताब रखे हुए है।

बड़ासा बिल्डिंग दिख रहा है।

एक बड़ा-सा मैदान है यहा पर कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

एक समुद्र के किनारे कुछ नाँव दिख रहे है एक छोटा-सा एक लकड़ी का मकान दिख रहा है।

एक रोड दिख रहा है जिसके किनारे एक बिजली का टावर दिख रहा है एक रस्ता गया हुआ है और --

एक झरना दिख रहा है जो पहाड़ से थोड़ा-थोड़ा पानी गिरता दिख रहा है पहाड़ मे कुछ छोटे-छोटे घाँस के झाड़िया दिख रही है।